दूसरे साइड कुछ लोग खड़े है।

दुकान में ढेर सारी बुक रखी है।

लोहे से रेलिंग बनी हुई है।

ऊपर की छत पे टीन पड़ी है।

बंडल बने दो तार पड़े हैं।

सामने दीवाल पे टी_वी और ढ़ेर सारे पिक्चर्स लगे हुए हैं।

जमीन और सीढ़ी पे पत्थर लगे हुए हैं।

रोड पे ढेर सारी गाड़िया और साईकिल खड़ी हैं।

वाइट रंग का एक घर है जिसपे लोहे की रेलिंग और हरे रंग का पेड़ है।

कुछ लोग एक साइड खड़े होकर देख रहे हैं।